ये एक घर के सामने का नजारा है। इस घर के सामने एक रोड नज़र आ रहा है।

आदमियों के राइट साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है स्कूटी के सामने से एक आॕटो जा रहा है।

लाइटिंग है हम्म जो बोहोत ही खूबसूरत लग रही है । यहाँ पर अंदर की साइड कुछ कुर्सियां लगी हुई ऐं ।

ये एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कुछ लोग आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर राउंड बनाकर सर्कल बनाकर कुछ लोग आसन कर रहे हैं कुछ लोगो के बराबर में--

बोहोत सारी कार्स दिखाई दे रही हैं। कुछ उह मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं। सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।